गाड़ी है। गाड़ी के गैरेज हई।

दूकान के पार्ट पुर्जा हेय एगो लड़का खाय ले गेल हेय।

दूगो लड़का हई।

टेम्पू हई। दूगो तीन गो लड़का हई। हरा पीला पेन्हले कपड़ा हई।

ई सब बढियां सब हई उमें सामान सब हई रखल हई।

पहन के अपन डांस कर रहले हेय लड़की हेय दु --

बहुत अच्छा देखे मे लगे छै हरा-हरा सामान हई ओय मे सब बढ़िया लगे छै देखे में लगे छै।

मकान हई ऑफिस हई ऊपर बादल दिखाई छई।

हरा हई से हरा चीज हई दिखाई दे रहल हई ओन्ही बता रहल हई।

पत्थर के पेंड़ हय।

स्टेट बैंक है पीला हरा कलर के महिला --

गोबी है केला है टमाटर है।